देश का नंबर वन सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट का यहां पे छड़ मिल रहा है यहां वाव ये दो कलर का शटर है रेड कलर का यहाँ पर ए_सी_सी करके लिखा हुआ है।

सॉस हैं मैगी है बिस्किट है मिक्सचर है।

हॉस्टल हॉस्टल ये एक मुस्लिम का हॉस्टल है।

साड़ी सब लेडिज जो लोग पहनती हैं अपने गर्लफ्रेंड लोग के लिए भी ले दे सकते है।